मस्त बैठिए यहां पे टेबुल पर बैग भी रखा हुआ है। बैग रखिये आराम से आराम से कॉपी किताब निकाल के पढ़ाई कीजिए दोस्त अच्छे से पढ़िए पढ़ने में ही सब कुछ है।

हरदम बेड यूज नहीं कर सकते हैं कभी बैठ भी सकते हैं। बॉडी एक स्टक्चर है जिसमें आप हर एक मूवमेंट को इंजॉय कीजिए दोस्त बैठिए सोइए इ सोफा बहोत ही प्यारा है खरीदिए किसी शाप का फोटो है।

खेलने के लिए एक राइड भी लगा हुआ है सामने एक छोटी-सी बच्ची है जो की खेल रही है और मजा --